यह फोटो में बैंक है।

और बैंक के ऊपर दो पोस्टर लगाया हुआ है।

यह फोटो में एक मॉल है।

बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

फोटो में एक दुकान है।

अ नीचे में बहोत सारे समान पड़े हैं।

और इसमें एक व्यक्ति है।

दीवार के ऊपर लाइट लगी हुई है बहुत सारे पेड़ हैं।

और इंडियन ऑयल के ऊपर तार निकली हुई है।

छोटा तालाब है ।

फोटो में एक पहाड़ है।

इसमे बहोत सारे व्यक्ति खड़ा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और इसमें बहुत सारे पक्खल भी हैं ।

टी_वी है कूलर है फ्रिज है।

और कुर्सी भी है लाइट लगा हुआ है।

एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और एक बाहर में बल्ब लगा हुआ है और बहुत सारी गाड़ी है।

दो झंडा लगा हुआ है और एक झरना है।

इधर में व्यक्ति हैं जो सामान ले रहे हैं।

में ढेर सारी सामान रखे हैं।

यह दुकान है और इसमें एक फीमेल और मेल खड़ी है ।

यह इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक साइकिल खड़ा कर रहा है।

दरवाजा बंद है खिड़की भी बंद है।

कोई व्यक्ति खड़े है तो कोई चल रहे है।